इस तस्वीर में मुझे एक ओर सड़क नज़र आ रही है जहां पे मुझे एक ऑटो रिक्शा चलता हुआ नज़र आ रहा है जिसमे कुछ लोग बैठे हुए है।

मुझे यहां से बहोत सारे लोग खेतों में नजर आ रहे हैं और आस पास हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां नजर आ रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक और घर दिखाई दे रहा है।

आसमान में मुझे डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है और बादल नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

और लकड़ियां जलाके धुआं भी यहां पे किया गया है।

और कुछ कार्स भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

यहां पे एक लकड़ी का बेड लगा हुआ है जिसपे कलर की बेडशीट बिछाए हुई है यहां पे मुझे शीशे का टेबल भी नजर आ रहा है।

और एक सड़क दिख रही है जहां पे गाड़ियां चल रही है।

यहां पे मुझे बहोत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है।

जो मरी हुई है इसे एक लकड़ी के काट में रखा गया है।

घर के आंगन के मुझे बहोत सारे फूल लगाई दे रहे हैं।